बल्ब भी लगा हुआ है और जहाँ पे मतलब रूम है जहाँ पर आदमी सब आके बाइक खरीद सकता है वहाँ पे आदमी सब बैठा हुआ रहता है।

अ बल्ब भी है और यहाँ पे लगता है है बड़ा और कुर्सी टेबल पर बैठे हुए हैं सब पुरे आदमी बैठे हुए और जेंट्स भी हैं और लेडिस भी है।